और इसको बहुत अच्छे से घेर दिए हैं लोह अथि लोहा के ऐथि से | ऊपर भगवान का फोटो लगा हुआ है और इधर बगल में घर है - वुर है ठीक है देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग --

फोन डला रहा है या पेपर पढ़ रहा है| सब अपना - अपना चेयर लगा के बेठे हुए हैं अपना-अपना ध्यान दिए हुए हैं| एक मंजिल यहाँ पे मंजिल है ऊपर सब पे पंखा लगा हुआ है आगे ब्लब - उल्फ जलाया है।

एक समुन्दर है समुन्दर में एक-दो तालाब दो नाव है।

यहाँ पे फुल फैसिलिटी के साथ है दिया लगा-लगाया हुआ है।